हैलो गाइस हमारा इंडिया जो है वह बोहोत बहुत ही तरक्की कर रहा है बिज़नस इसमे और आप यहाँ पे देख सकते है कि किस तरह से हमारे पास टेक्सटाइल इंडिया लगा हुआ है।

ही कारीगिरी हो रही है। स्टेज के ऊपर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह एक एजेंसी है। जहां पर इन्होंने एक बैटरी वाली गाड़ी को निकाला है।

और कुछ मजदूर इसे बना रहे हैं और कुछ गमलों में यहां फूल रखे हुए हैं।

जाता है और कुछ मजदूर मकेनिक इन्है ठीक कर रहे है।

इस चित्र में बच्चे नज़र आ रहे हैं और एक यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है व्यक्ति ने पीले रंग के वस्तु पहन रखे हैं और सफ़ेद रंग का वस्तु पहन कर एक बच्चा देख रहा है।

दुकान दिख रही है दुकान का पूरा लाल रंग का है और पीछे दरवाजा कांच का है।

व्यक्ति के हाथ में लोहे का कोई सामान दिख रहा है और व्यक्ति के पीछे बहुत सारे बुक किताबें रखी हुई हैं।